इस फोटो में मुझे एक समोते दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक शादी का वेन्यू दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी दवाई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक--